स्कूटी है दो धोने के लिए लाया हूँ बोहत सारा बाइक भी है काफी सारा मात्रा में आदमी भी है।